यहा जैसे आर्टस साइंस बी.एड. कॉमर्स --

यहां पे लोगों के लिए काफी अच्छी सुविधाए दिए गए हैं और--

ये सूर्य नर्सिंग होम है ये ये जैन रोड में स्थित है यहां बहुत सारे डॉक्टर हैं।

यहां आई.सी.यू. का आ व्यवस्था है।

कछुआ बहुत सुस्त जानवर होता है।

यहां पर ताजी मछली मिलती है और बड़ी मात्रा में लोगों के लिए मछलियां रखी जाती हैं।